गार्डन्स में बहुत से कलर्स दिख रहे हैं ।

जिसका नाम मोहन कलकत्ता फ्लावर डेकोरेटरस है।

बेठे हुएं हैं एक ग्रूप और जिसमें --

ग्रीन कलर्स एक व मतलब फ्लैग भी है।

पेड़ भी लगे हुए हैं।

ग्रीन भी है ब्लू भी है कई तरह से --

कमरा अम कोड़े करकट भी हैं।

बैंक है स्टेट बैंक --

बगल एक शोप है एक लड़की बनी हुई है वो ग्रीन कलर का फ्रॉक --.

शूज भी पेहेन रखे हुए हैं ।